और साफ सुथरा बैलून लगा हुआ है। बहोत साफ सुथरा है।

और यहाँ पे और यहां पे देखने मे बहोत अच्छ --

और कोण होना चाहिए यहाँ पे बहोत अच्छा लग पर --

यहाँ पे बहोत अच्छा लग रहा है देखकर बेंच --